स्टैच्यू बना हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाजू में एक छीन का पेड़ लगा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ लोग दीवाल पे बैठे हुए हैं। अपनी सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह पर एक ज़मीन दिखाई दे रही जो ग्रे कलर की दिखाई दे रही है। उसके बाजु में बोहोत सारी झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो भी --

शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है जहाँ दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर स्टेज पर कुछ --

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। उसके नीचे कुछ पोर्च दिखाई दे रहा है। वहाँ पोर्च के नीचे --

एक दुर्गा माता की तस्वीर दिखाई दे रही है जो दस हो { ओं की दिखाई दे रही है। इसके आजू-बाजू में मूर्तियां लगी दिखाई दे रही हैं रावण --}

दिखाई दे रहा है जहाँ पर ए ये कुछ फिलीम का थिएटर दिखाई दे रहा है जो मॉल के अंदर लगा दिखाई देता है। यहाँ पर --

यहाँ पर कुछ बक्से रखे दिखाई दे रहे हैं। कुछ पानी की बोटल दिखाई दे रही हैं। कुछ लकड़ी का बना हुआ फ्रेम दिखाई दे रहा हैं।

फोन दिखाई दे रहा है। जहाँ पर पूरी जैकेट टंगी हुई दी रही है तरह-तरह की हर साइज जैकेट आ हाफ दिखाई दे रही है फूल दिखाई दे रही है बच्चों को दिखाई दे रही।

खम्ब बड़े-बड़े पोल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बड़े झाड़ और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।